यह दृश्य किसी जानवर का है ।

यह दृश्य किसी सिनेमा हॉल --

फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं।

यूनिवर्सिटी के गेट खुले हुए हैं और यूनिवर्सिटी में --

कुर्सियों पर बैठे हुए हैं और --

अनेक बड़े-बड़े झूले व स्लाइड्स लगाई हुई है ।

यह दृश्य किसी कंपनी के अंदर का है ।

यह वर्कर वहां पर कार्य करता हुआ नजर आ रहा है।

और स्टोर का नाम है डेल एक्सक्लूसिव स्टोर |

यह दृश्य एक बेकरी के अंदर का है और बेकरी के अंदर डेकोरेशन बहुत ही अच्छी --

यह तस्वीर किसी बिल्डिंग की है और बिल्डिंग की ऊंचाई भी बहुत ज्यादा है और --

फोटो खींचते हुए नजर आ रहे हैं और वे सभी --